जहाँ पर कुछ गुब्बारे और हैप्पी बर्थडे का स्टीकर लगाया हुआ है। यहाँ पर --

जहाँ पर एक सोफा सेट डाला हुआ है सामने मेज है मेज के ऊपर --

एक तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है यह तिरंगा खुले मैदान के अंदर --

वेदांता बुक डिपो के नाम से इसका नाम है इसका अंदर किताब भी --

रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है यह बाहर का दृश्य है।

यहां पर कट्टो में चिन्नी चावल चाय-पत्ती गुड़ --

डॉक्टर का कोर्स कर कर यहां हॉस्पिटल के अंदर --